जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा जिस पर बहुत सुंदर लाइट लगी है लाइट का रंग हरा और लाल है यहाँ पर --

यहाँ पर एक महिला बी खड़ी हुई है। सामने एक बोर्ड लगा है जो लाल रंग का जिस पर ब्रिटिश अकैडमी वेलकम यू लिखा हुआ है। यहाँ पर पंखे भी लगे हैं।

जो कि नी-ब् नीले लाल काले रंग की है। यह चार रिक्शे खड़े हुएं हैं। ज़मीन का रंग काला है तथा यहाँ पर इमारत है।

यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। जिस पर वह मोबाइल द्वारा अपनी तस्वीर ले रहा है। यहाँ पर एक नीचे दीवार है जो हरे रंग की है पीछे पिलर लगे हुए जो काले और --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है जोकि जमीन खोदने वाली जेसीबी हैं इसका रंग पीला और काला है।

क्रीम रंग की है। इसका रंग आगे से भूरा है तथा यहां पर कुछ जालियां भी लगी हुई है। यहां पर कुछ बाइक और स्कूटी भी खड़ी हुई हैं।